इसमें बहुत सारे आदमी बैठे है ग्राउंड दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे --